यह एक लड़का हरे रंग का सर्ट और एक लड़की पीले कलर की जर्सी पहनी हुई है।

तथा यहां दीवारों का रंग सफेद है।

दीवार का रंग सफेद कलर की है।

और काफी सारे पंखे नजर आ रहे हैं घड़ी रंग और सफेद और ब्राउन रंग है।

कुछ घर भी नजर आ रहे है जोकि ब्राउन और व्हाइट कलर के है ।

यहां कुछ दोकन नजर आ रहे हैं जो की बोर्ड लगा हुआ है एयरटेल का।

तथा दीवारों का कलर ऑरेंज और व्हाइट कलर --

तथा यहां एक एम्बुलेंच नजर आ रह है जो कि वाइट और ब्लैक कलर का है।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

डेकची का रंग है व्हाइट और ब्राउन है और एक मूर्ति का कलर व्हाइट और ब्राउन नजर आ रहे है।

यह एक मस्जिद का दृश्य है जो कि उस पर कई सारी खिड़की नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर गुंबज और एक मीनार भी है।

ये आंख का कलर ब्लैक और वाइट कलर की है माथे पर रेड कलर का कुछ लगा हुआ।

जहां पे बहुत सारी गाड़ी नजर आ रही है।

और यहां हरे भरे पौधे नजर आ रहे हैं यहां पे एक आदमी है जो ब्लैक कलर का शर्ट और जींस पहना हुआ है।

पोस्टर भी नजर आ रहा है जोकि आसमानी और रेलियो कलर का है।

कुछ गाड़ी और साइकिल में नजर आ रही है कुछ झोले भी नजर आ रहे हैं जो कि व्हाइट और--

दो आदमी आ रहे हैं जो कि इस स्वेटर पहने हुए हाथ में हेलमेट लिया है और मास्क लगाए हुए हैं।

और जू जाली में बन्द है।

यह एक रूम का दृश्य है जिस पर एक लेडीज दो जेंट्स बैठे हुए है।

और यहां बैलून का रंग व्हाइट पिंक और रेड कलर का है।